जो की देखने मे मन को इतनी मोह रही है की हमें भी मन कर रहा है की उस तरह का मंजिला बनबाए ।

ई खोज में जाते है और यहाँ पर जाने पर ईशा मसीह से हमें भेट होती है तथा लगता है की हम सभी दुःख से दूर होकर यहाँ हमेशा के लिए रह जाए ।